यह एक छोटे से कार्यालय का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है तथा इसके पड़ोस में खाली ज़मीन पड़ी हुई है।

निश्चित कार्य प्रणालियों के साथ-साथ कार्य करके उनका समुचित विकास व निर्माण करना --

तथा आसमान का स दृश्य भी बहुत सुंदर रूप से प्रतीत हो रहा है।

उस पानी के दृश्य इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है। जैसे नीचे धरती में और आसमान मे दोनों में मिलकर वहाँ पानी का चल रहा हो। जिसकी वजह से सुंदर प्रतिमा --

यह एक शादी के अंदर की सजावट का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है तथा इसमें लाइटिंग की व्यवस्था की वजह से व्यवस्था बहुत ही सुंदर रूप से प्रतीत हो रही है।

तथा चारों तरफ से टेंट की व्यवस्था भी इतनी सुंदर की गई है की वह चारों तरफ से आसमान में तारों की तरह चमक रही है।

थोड़ी दूर स्थित प्रणाली के रूप में कार्य कर रही है यह एक मैदान के बीच में स्थित एक प्रतिमा है जिसके पीछे एक पेड़ दिया गया हैं।

यह एक सरकारी जगह पर बाहर का सामान चित्रण दिखाई दे रहा है। जिसके बाहर कुछ वाहन भी खड़े हुए हैं।

जो अपने सरकारे कार्य से संबंधित कार्यों को पूर्ण कराने के लिए वहाँ पर सब बैठे हुए सरकारी विभाग के सभी व्यक्तियों से मिलने के लिए गए हुए हैं तथा व्यवस्था का निर्माण किया गया है।

जोकि बहुत दूर तक फैला हुआ है एक टावर से बहुत सारे लोगो को लोग को नेटवर्क प्राप्त किया जा सकता है।

एक व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार दिखाने जाने वाली प्रतिमा है।

उसे बाहर से लेकर ऊपर तक पूरा ही ग्रुप में सयोजित किया जा रहा है जो एक सुंदर व्यवस्था के रूप मे दिखाई दे रहा है। यह कार्य पध्दती के अनुसार नियोजित प्रणाली है जो --

इय सुंदर व्यवस्था शोरूम की --

ये है एक कपड़ो की दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पर डमी ने एक फ्रॉक पहनाई हुई दिखाई हुई है पीछे उसके सारे कपड़ों की व्वस्था जमाई गई है

एक दुकान के अंदर का सामूहिक चित्र है जोकि कपड़ो को पहना कर दिखाया गया है। यहाँ पर कलेक्शन के सम्बंध कइ तरह के कपड़ो का उत्पाद दिखाया जाता है।

यहां दो प्रतिमा शाली प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं जो कि मंदिर के ऊपर स्थापित है।

यह एक फूलो की दुकान दिखाई दे रही है जिसपे गुलाब के फूल मोगे के फूल सूरजमुखी के फूल कांदा के फूल चमेली के फूल सभी तरह के फूल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।